बहुत मोटरसाइकिल लगा है एक बड़ा चार चक्का गाड़ी लगा है और --

इठो एक ब्यूटी प्लोर है ये ब्यूटी प्लोर मे एक लड़की का बहुत बड़ा--